पेड़ लगे हुए हैं यहां पर नारियल के पेड़ भी लगे हुए हैं और खजूर के पेड़ --

भीमराव अंबेडकर की एक फोटो भी सामने की ओर लगी हुई है जहां पर --

लाइब्रेरी है जहां पर फर्नीचर पूरा ब्लू कलर का बनाया हुआ फर्नीचर है पास में ही लाइट बोर्ड --

यहां पर और आरी और तारी का काम किया जाता है जिसके कपड़े--

खेल के आइटम्स बच्चों के द्वारा बनाए गए हुए आइटम्स है जहां पर यह --

बड़ी दुकान है जोकि पुराने मार्केट में बसाई गई दुकान है यहां पर आइसक्रीम --

यह लाइब्रेरी काफी पुरानी है यहां पर सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल है।